और बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं और--

इस फोटो में एक चीता दिखाई दे रहा है और--

इस फोटो में एक दाना मंडी में पड़ी हुई गेहूं दिखाई दे रही है और बहोत सारीयां--

बोरियां दिखाई दे रही हैं और एक ट्रैक्टर ट्राली भी दिखाई दे रहा है और बाइक भी दिखाई दे रहा --

और एक स्क्रीन पर लगी हुई है और लाइट भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बर्तन वाली दुकान दिखाई दे रही है। जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। गमले खिलौने--